हाई देख एक ठी घर बा घरवा पे शटर लगल बा शटरवा खुललबा शटरवा की अंदरवा शीशा लगल बा।

ओवे समनवा में कुछ काला बा। कुछ सफ़ेद बा। अ खूब ढेर क लाइट लगल बा। सब लाइटवा जलत बा। वोहीई में गुब्बाड़ा भी लगल बा। गुब्बाड़ा लाल पिला बा।